बगल में तीन आदमी बैठे हुए है यहाँ पे एक आदमी है उसका बाल काट रहा है ऊपरएक फैन लगा हुआ है बगल में एक लाईट लगी हुयी है।

इसपे दो लड़का बेठा हुआ है बगल में कुर्सी लगी हुई है बगल में एक पंखा लगा हुआ है यहाँ पे एक कुर्सी लगी हुई है।

यहाँ पर एक स्टूल लगी हुई है बगल में काउन्टर लगा हुआ है।

यहाँ पे एक गाड़ी लगी हुई है उस गाड़ी में चार चक्के हैं बगल में बैल भी है बगल में छोटा सा दुकान भी है।

इसके आगे एक दुकान भी है पीछे मे एक टावर भी लगी हुई है।

यहा पर बोहोत सारे चेयर लगी हुई है चेयर के आगे टेबुल लगे हुए है वहा पे बहुत सोफे भी लगे हुए है।

यहाँ पे एक टंकी रखी हुए है टंकी ट्रक पे है ट्रक उसको उठाये हुई है।

इसपे लिखा हुआ है चौक सरदार रोड गया बगल में बिल्डिंग्स भी है बगल में बहुत कुछ रखे भी है बगल में एक जनरेटर भी है।